औरत को ट्रॉफी दे रहे है इसमें टेबल पर --

गेट दिखाई दे रहा है कारे भी दिखाई दे रही --

आदमी अपने खेत पर बांट एक टोकरी में कुछ --

इस इमेज मे बस दिखाई दे रही --

चार पांच औरतों स्नान कर रही है चारों तरफ फूल --

जिसमें बाहर की ओर एक निम का पेड़ लगा हुआ है।

नीचे की ओर द चेन्नई सिल्क नाम की साड़ियों की दुकान भी है।

इस इमेज मे एक कैफे नज़र आ रहा है जिसमे --

ग्राहकों के बैठने के लिए बोहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

सामने की ओर कुछ कुर्सियां नजर आ रही हैं।

जिसमें एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है जिसके लाल कलर के फूल आ रहे हैं।